यहां पर एक मंदिर है मंदिर को सजाया गया है।

यहां पर सामने एक दुकान है।

हुए हैं और यहां पर कुछ घर भी हैं।

यहां पर दो आदमी भी खड़े हैं आस पास कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

पानी का टैंक और कुछ गाड़ियां--